पीछे एक बड़ा सा गाच दिखाया गया है।

पीपल के गांछ दिखाए जा रहे है। बांस से घेरा गया है बाउंड्री टाई--

कैंडल जल रहे दो पत्थर हैं मो अगरबत्ती जलाए जा रहे हैं बहुत सारे वर्कर है जो खड़े बहुत सारी मशीनें हैं एक वर्कर है जो काम कर रहा है ऊपर गेंदा फूल के माला से सजाया गया।

एल_ई_डी लाइट है और छप्पर है बहोत सारे बांस से किए गए हैं।

एक ईस्कूल दिखाया गया हैं बहोत बड़ा सा कुछ विंडोज हैं बॅलकुनीज हैं दरवाजा हैं बाहर एक गाड़ी खड़ा हैं दो तीन टैक्सियाँ हैं एक बड़ा सा पेड़ हैं पेड़ को पेंट किया गया हैं।

एक लड़का को दिखाया गया है जो पानी का बॉटल लिए हुए पानी पी रहा है वह हॉफ पैंट और टी शर्ट पेहने हुए है हाथ मे घड़ी लिए हुए है एक चट्टान टाइप कप दिखा जा रहा है जो पेंट किया हुआ है बहोत सारे पेड़ पौधे है उसमें और छोटे-छोटे घास है पौधे है।

कुछ फूलों के हैं बहुत सारे लड़के लड़कियां ओल्ड जें ओल्ड आदमी लोग जो--